इस दृश्य में बहोत सारे फूल दिखाई दे रहे हैं जिनका कलर व्हाइट पिंक रेड और येलो है।

जमीन पर मिट्टी भी दिखाई दे रही है।

बहुत सारी साइकिले दिख रही है जिनका कलर ब्लैक ग्रीन रेड ब्लू और ऑरेंज है।

कुछ व्यक्ति एक्सरसाइज कर रहे हैं।

बहुत सारे डब्बे दिखाई दे रहे हैं जिनका कलर लाल और पीला और वाइट है।

जामनी पर मार्बल भी लगा हुआ है।

कुछ कुर्सियां दिखाई दे रही है जिनका कलर लाल है ।

इस दृश्य में कुछ बिल्डिंग दिखाई दे रहे हैं जिनका कलर ब्लू और वाइट है।

इस दृश्य में एक सब्जी का दुकान दिखाई दे रहा है।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

कुछ घर दिख रहे हैं।

और जमीन पर बालू बिखरी हुई है।

कुछ खिड़कियां भी दिख रही हैं।

एक स्विच बोर्ड भी लगा हुआ है जिसका कलर व्हाइट है।

बिल्डिंग के ऊपर कुछ ए_सी के मसीनस भी लगे हुए हैं जिनका कलर व्हाइट है।

जमीन पर टाइल्स भी लगा हुआ है।

जमीन पर टाइल्स लगा हुआ है।

ट्रक के ऊपर भारत पेट्रोलियम लिखा हुआ है।

एक व्यक्ति नजर आ रहा है जिसके कपड़ों का कलर ब्लू एंड ब्लैक है ।

एक पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा है जिसके सीलिंग पे लाइटें लगी हुई हैं।